यहां में चार आदमी मछली काट रहे है और उसको मछली को किनने के लिए बहौत सा आदमी--

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि--

मुझे लगता है ही ये जो लड़कियों का सामान है जो कि बहुत मजा से सजाकर रखा हुआ है एक के उपर एक से एक के उपर एक एक के उपर एक ऐसे रखा हुआ है।

उसका पीछे में कुछ बुक्स बुक्स है उसका पीछे में सी_सी कैमरा सिस बॉक्स सिस बॉक्स में शायद चार्जर लगा हुआ है।

जो पड़ा हुआ है एक ठो आगे में रेड कलर का चेयर पड़ा हुआ है अंदर में बहुत अलग अलग कलर का अलमारी पड़ा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि यह एक बैंक है और यहां में बहोत सारा आदमी जमा हुआ है।

वाला दूर वाला में और एक ठो घर नजर आ रहा है।

खुद से आदमी लोग यहां में पूजा कर रहा है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहे हैं कि ये दुकान है जहां दो लड़की परा हुआ है।

और नीचे में बहुत सा चेयर पड़ा हुआ है।

घर वर ये सब दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि ये एक स्विमिंग पूल है यहां साइड साइड में तीन घर बनाया गया है।

इसका बाद उधर में दो तीन लोग नहाने के लिए आने वाला लोग भी नजर आ रहे।

उसका दीवार में एक ठो वॉल क्लॉक टांगा हुआ है उसके ऊपर में कुछ सामान रखे गए हैं।

कलर का दुकान है जो की बहोत अलग अलग टाइप का कलर हो रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो गाड़ी पार्की पार्किंग है।

उसका पीछे में दो ठो पिलर है उसका ऊपर में एक ठो दीवार है जो की ब्लू कलर का है और उसमें--

दृश्य में ये नजर आ रहा है कि ये रात का समय है और आगे में दो ऑटो पड़ा हुआ है ऑटो का आगे में एक आदमी पड़ा हुआ है।

सब बना हुआ है जो की साइड साइड में दो ट्यूबलाइट लगाया गया है उसका पीछे में दीवार है जो कि ब्राउन और वाइट कलर का है।

उसका बाद उसका आगे में एक ठो उसका बस का ड्राइवर है।